यहां पर साधु ड्राइविंग स्कूल उमरिया का एक कार दिखाई दे रही यहां पास बहोत लोग खड़े हुए हैं कार सीखने के लिए--

यहाँ पास बहोत सारे लोग कार सीखने के लिए खड़े हैं।

चारों साइड पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं साफ सफाई भी दिख रही है।

और ये एक बेंच में रखे गए हैं जो कि ये एक अच्छे से बेंच हैं बड़ा सा व्हाइट कलर का।

और यहां पास डेकोरेशन बहोत ही अच्छे से किया गया है।

और यहां पास एक कार भी पेट्रोल फिलिंग करा रही है भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है चारों साइड साफ सफाई का बहोत ही अच्छे से ध्यान रखा गया--

जोकि एक अच्छी बात है और लाइटिंग किया गया है वाइट कलर का सारा साइड से बोडरिंग किया गया है स्काई ब्लू कलर का जोकि बहोत ही अच्छा है।

सामने वाइट और रेड कलर का बैलून्स भी लगाया गया है।

और चारों साइड भीड़ है और यह मछली को नीचे रखा है।

सामने को दे रहा है बहोत ही बड़ा--